ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड इसमें एक भी लगी हुई है जिसमें बच्चे रिसक रहे हैं।

एंड इसमे एक पंखा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है एंड इसमे एक लड़के का लोगो भी लगाया गया है।

एंड इसमें एक अंकल खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आंखों के चश्मा लगाया हुआ हैएंड उनकी शॉप पर खाने-पीने की समान और देख रहे हैं जैसे इसमें से नमकीन भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमे एक बहुत बडी एक बिल्डिंग दिकाई दे रही हैं जिस की आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ।

ये एक बिल्डिंग हैं जिस के अंदर एक बैंक खुला हुआ हैं इस के पास बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं दिखाई दे रहे हैं इस मे बहुत सारे लोगों ने मास्क लगा हुआ हैं ।

यहां पे एक डांस का फंक्शन हो रहा हैजिसमे काफी सारी पब्लिक दिखाई दे रही है एण्ड यहां पे बहुत सारी पब्लिक डांस करती हुए भी नजर आ रही है।

ये एक सेलुन की दुकान हैं जिस मे एक कांच का गेट भी लगा हुआ दिखाई काई दे रहा हैं एंड इस के पास मे एक कुप्पि भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं ।

एण्ड इसके पास मे बहुत सारे पेड़-पोधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।

ये एक रेलवे ब्रिज हैं इस के पास मे बहुत सारे एल.इ.डि लाईट जलती हुई दिखाई दे रही हैं ।

एंड इसमे तिन एल.ई.डी लाइट भी जलती हुई दिखाई दे रही है।

ये एक मीट की दुकान है।

ये एक तलाब हैं जिस के पास मे पेड हैं पेड के पास बहुत सारे मकान भी बने हुये हैं एंड इस मे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग धिकाई दे रही हैं तलाब के पास।